इस नदी के ऊपर बोहोत सारी चिड़िया घूम रहे हैं जो दिखने में बोहुत सुन्दर लग रहे हैं।

यह शॉपिंग मॉल जैसा एक दुकान नज़र आ रहे हैं।

यहाँ संगीत विद्यालय है जिसमे दो-तीन टीचर दिखाई दे रहे हैं।

और खेत मे बहुत सारे वक भी हैं।

यह एक के.एफ.सी. सेंटर हैं।

जिसमें बर्गर की टैग लगी हुई है।

यहाँ इंडिगो की एयरोप्लेन लगी हुई है। जिसका रंग सफ़ेद और ब्लू है।

यहाँ एक शादी की भवन लग रही है।

और छोटे-बड़े पौधे पेड़ नज़र आ रहे हैं जो दिखने में बोहोत ही सुन्दर है।

यहाँ फल की दुकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक लड़का खड़ा होकर फल बेच रहा है और पैसे गिन रहा है।

सभी मेज पे चार-चार कुर्सियाँ लगी हैं। जिसका रंग सफेद और भूरा है।